मन खुश होता है जाने का मन करता है ऊपर की तरफ लाइट लगी है ए.सी लगी है तार लगा है।

दीवाल पे जमीन पे सफेद रंग की बोरियों पे कुछ रखा हुआ है बहुत सारी बोरियां हैं कुछ बोरियां नीली हैं।

दो गाड़ियां हैं एक स्कूटी स्कूटी काली है उसमें पीछे नंबर प्लेट है गाड़ी है उसमें पीछे नंबर प्लेट लगेगा दो आदमी देख रहे हैं। इसत--

घर है उसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी है खिड़कियों पर कांच लगी हुई है ऊपर से तार गया हुआ है पेड़ पौधे हैं जो की हरे भरे हैं नीचे बुरी मिट्टी हरी मिट्टी है एक आदमी है जो कि पीने के नीचे है।